इस तस्वीर मे एक काली दीवार दिखाई दे रही है और कुछ लाइटे जल रही है और एक टेबल पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे दीवार पे कुछ तस्वीरे दिखाई दे रही है लड़कियो की और टेबल कुर्सियां दिखाई दे रही है।

और सफेद दीवार दिखाई दे रही है और ऊपर अंग्रेजी मे एन_आर_आई लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ लाइटें रख्खी हुई दिखाई दे रही है और टेबल कुरसिया दिखाई दे रही है।